सामने एक वाटर पार्क जैसा दिख रहा है। एक पूल बना हुआ है पूल में रंग-बिरंगे छले लगे हुए हैं।

शोरूम के अंदर दो आदमी दिख रहे हैं। एक ने बनियाईन पहनी है। एक ने नीली शर्ट पहनी है और एक लड़का लड़की के साथ खड़ा हुआ है। छोटी बच्ची के --

इस मैदान में एक आदमी कुर्सी के साथ बैठा हुआ हैं। कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ हैं। एक हरे कलर का टेन्ट भी लगा हुआ हैं।

दो चट्टाने दिख रही है चट्टाने नदी के पास पड़ी हुई हैं। हरे कलर की घास भी दिख रही हैं। छोटे-छोटे वहाँ पर --

एक आदमी साईकिल से आता हुआ दिख रहा हैं। हरे-हरे पेड़ दिख रहे हैं। एक मैदान सा दिख रहा है। एक गाय --